यहां पे कुछ अह आदमी खड़े हैं हाथों में झंडा ले के दो आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पे मुर्गियों को रखने के लिए बहुत सारे बॉक्सेस बनाए गए हैं।

कर्यालय के मेन गेट पर आयरन का गेट लगा हुआ है आयरन का गेट का कलर लाल है उस गेट के बाहर तीन आदमी खड़े हैं।

यह एक बहोत बड़ा फील्ड है इसके पास महाविद्यालय है उसके पास बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है यहां पे बहोत सारे त तार बिजली के खंभे हैं।

घर को बहोत ही सुंदर तरह से झलरी से सजाया गया है।

यहां पे आस पास पेड़ पौधे भी है यहां एक ताड़ का पेड़ है एक आम का पेड़ है।

यहां पे दीवारों पे बहुत सारे यो योगासन के पोस्टर्स लगे हुए हैं।

यहाँ पे बिस्कुट रखा हुआ है एक दुकनदार बैठा है जो तराजू में समान को तौल रहा है।

कुछ झंडे लगे हुए हैं दीवाल के ऊपर भी झंडे लगे हुए हैं यहां पे कुछ पाइप रखा हुआ है।

एक बच्चे ने कान में अपने ईयर फोन लगा रखे हैं दूसरा बच्चा पेट के बल लेटा हुआ है तीसरा बच्चा कमर पे हाथ करके खड़ा है।

बारात को सजाया गया है यहां पे हाथी के साथ एक एक हाथी सवार है यहां हाथी के ऊपर ब लड़के बैठे हुए हैं।

किसी ने जैकेट पहन रखा है किसी ने शर्ट के ऊपर हाफ स्वेटर पहन रखा है।

यह एक रूम है यहां पे कई बेंच लगे हुए हैं यहां पे कई कुर्सियां लगी हैं कुर्सियों पे कुछ बच्चे बैठे हैं एक बच्चा आगे से बैठा है।

टेंट के अंदर बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है वहां पे कुछ आदमी कुछ औरत कुछ लड़कियां बैठी हुई है।